finding and evaluating modules पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे module के लिए सर्च करना और module का मूल्यांकन करना
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबंटु लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम drupal 8 और firefox वेब ब्राउजर आप अपने पसंद का कोई भी वेब ब्राउजर उपयोग कर सकते हैं
श्रृंखला में पहले हमने modules के माध्यम से website को एक्सटेंड करने के बारे में सीखा
और हमने कुछ modules को भी सीखा जो कि drupal में है
हमने course में पहले ही module devel installed किया है
लेकिन अब हम समझेंगे कि बडे modules का कैसे मूल्यांकन और पता करें
drupal org/project/modules पर जाएँ
यहाँ drupal में लगभग 18000 modules उपलब्ध हैं
कृपया ध्यान दें कि drupal module केवल drupal के version के साथ कार्य करता है जिसके लिए यह intended है
अत: हमने drupal के version में core compatibility अपडेट किया है जिसे हम उपयोग कर रहे हैं
यह tutorial drupal 8 release होने से पहले recorded किया गया है यदि हम drupal 8 के लिए देखें हम केवल 1000 modules देखते हैं जो हमारे सर्च से मेल खाता है
इस demo में modules के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात दर्शाने के लिए मैं drupal 7 पर वापस जाऊँगी
search पर click करें और यहाँ drupal 7 के लिए 11000 modules हैं यह बहुत बडा अंतर है
समय के साथ हम drupal 8 modules की संख्या तेजी से बढते हुए देखेंगे
इसी बीच सीखते हैं कि एक अच्छे modules का मूल्यांकन कैसे करते हैं
इस पेज पर drupal के version के core compatibility पर filter करते हैं जिसे हम उपयोग कर रहे हैं यह सूची most installed या most popular द्वारा सॉर्ट की गई है
chaos tool suite या ctools और views drupal के हर समय लोकप्रिय modules हैं
views पर click करें
यहाँ एक अच्छे module का मूल्यांकन करने के लिए 3 सरल step हैं
माना कि हम license bureau में car चलाने या register करने के लिए license प्राप्त करने जाते हैं
अधिकांश us राज्यों में इसे dmv या department of motor vehicles कहते हैं अत: हम d m और v याद रखेंगे
d अर्थात documentation m अर्थात maintainers और v अर्थात versions
project information और downloads के नीचे दी गई जानकारी को देखें
d के साथ शुरू करते हैं views हर समय दूसरा सबसे बडा लोकप्रिय module रहा है
असल में इसे drupal 8 में शामिल किया जा रहा है और हमने इस course में views का बहुत बार उपयोग किया है
open source में documentation पढने के सिवाय module सही है या गलत यह समझने के लिए यहाँ अन्य कोई shortcut नहीं है
module क्या करता है यह पता करने के लिए हमेशा documentation पढें
समस्याएँ क्या हैं यह पता करने के लिए हमेशा documentation पढें
हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ help उपलब्ध है इसके लिए documentation पढें
जब हमने module install कर दिया है तो कौन सा parts on है यह पता करने के लिए हमें documentation पढना चाहिए
documentation पढना अत्यंत महत्वपूर्ण है
कृपया ध्यान दें कि open source में यदि module आपकी site को नष्ट कर देता है तो आप कुछ नहीं कर सकते
आपको documentation पढना चाहिए और निर्धारित करें कि क्या module उसके अनुकूल है जो आप पहले ही अपने site पर कर चुके हैं
अत: मैं काफी जोर नहीं कर सकता इन सभी जानकारी को इन पर क्लिक करके पढें यह documentation लिंक issue और bug reports
पता लगाने के लिए कि इस module में क्या है अत: यह d है
m अर्थात maintainers
यह विशेष module merlinofchaos द्वारा शुरू किया गया था
अब जब हम उसके name पर click करते हैं यह उसका drupal profile दिखाता है
course के बाद में हम सीखेंगे कि अपनी drupal profile कैसे बनाएँ है
यहाँ हम देखते हैं कि earl miles का drupal project में एक बडा योगदान है6300 से अधिक commitsऔर वह chaos tools और views का मुख्य निर्माता है
यहां इस विशेष module के लिए अन्य बहुत सारे maintainers हैं
modules में आप देख सकते हैं कि केवल एक व्यक्ति इसे संभाल रहा है या आप देख सकते हैं कि व्यक्ति का एक समूह module संभाल रहा है
दोनों ठीक है
लेकिन module missioncritical होता है और maintainer इसके साथ जारी रहने में असमर्थ है फिर हम मुसीबत में हो सकते हैं
अत: यह कुछ विचार करने योग्य है
अंत में नीचे project information और versions या v है
v का maintenance status अभी comaintainers है हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है
views को पहले से ही drupal 8 में शामिल किया गया है अत: वे सिर्फ यहाँ कुछ मदद के लिए देख रहे हैं
यह under active development है
यह लगभग million sites पर हैं और आँकडों के अनुसार 76 million downloads पहले से हैं
अब यह महत्वपूर्ण है यदि project abandoned या ive given up दर्शाता है तो उन module का उपयोग करना छोड दें
आप उसे बहुत बार नहीं देखेंगे
हमेशा module के version का उपयोग करें जो कि आपके drupal installation के version के समान हो
यहाँ drupal 8 version नहीं है क्योंकि views पहले से ही core में है
लेकिन यदि मैंने इसे drupal 7 में इंस्टॉल किया था तो मैं इस link पर click नहीं करूँगी
यह हमें node पर ले जायेगा जो इस module के बारे में विस्तृत जानकारी देता है
tar या zip पर right click करने के बजाय copy link पर click करें
इसे पहले ही उल्लेख किया गया है जब हमने devel installed किया
how कैसे तय करेंगे कि module हमारे लिए सही है
dm v की तरह
एक प्रश्न यह भी है कि module का पता कैसे करें
एक option है कि durpal dot org slash project slash modules पर जाएँ
और वहाँ उपलब्ध कई में से core compatibilitycategories द्वारा filter करें
अन्यथा modules को खोजना असंभव है हमें drupal dot org की जरूरत है
यदि आप इसमें अच्छे हैं तो आप उन्हें खोजने में सक्षम होंगे लेकिन नये यूजर वहाँ modules की सूची की संख्या के साथ भ्रमित हो सकते हैं
फिर से सवाल होगा कि कौन सा module हमारे लिए सही है
google आपका दोस्त है
यदि आप date field के साथ drupal module खोज रहे हैं तो type करें drupal module date
और पहले date module आता है
हम जानते हैं क्योंकि url drupal dot org slash project slash date है
क्या यदि हमें rating system की जरूरत है
type करें drupal module rating system
अब हमें यहां 2 options मिलते हैं fivestar rating module या star rating module
अत: हमारे पास 2 modules हैं जिन्हें हम यह निर्धारित करने के लिए देख सकते हैं कि हमारे लिए कौन so सही है
क्या यदि हमें webform चाहिए
फिर type करें: drupal module webform
और हमें webform named project मिलता है
अभ्यासी के लिए modules खोजने का यह सबसे अच्छा तरीका है
drupal module और हमें अपने module का क्या करने का वर्णन
मुझे आशा है कि यह मददगार hope याद रखें modules पता करने के लिए google सबसे अच्छा है
और कौन से module हमारे लिए सबसे अच्छे हैं यह समझने के लिए d m और v को याद रखें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
संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा module के लिए सर्च करना module का मूल्यांकन करना
यह video acquia और os ट्रेनिंग से लिया गया है और spoken tutorial project आईआईटी बॉम्बे द्वारा संशोधित किया गया है
इस link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे download करके देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाओं का आयोजन करती है और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए हमें लिखें
spoken tutorial project nmeict मानव संसाधन विकास मंत्रायल और nvli संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निधिबद्ध है
यह स्क्रिप्ट बिंदु पांडे द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद